एक सामने भी काफी सारी गाय दिखाई दे रही है।

और यहां पर ऊपर फूलों से डेकोरेशन भी दिख--

और यहाँ पर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे है।

भी दिखाई दे रही है यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक वाइट कलर की कार --

कर्टन्स भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक घड़ी भी दि--

और ऊपर ऐ_सी भी दिखाई दे रहा हैं काफी सारी लाइटें भी दिखाई दे--

और दो लड़के भी दिखाई दे रहे हैं नीचे दो टायर भी दिखाई--

भीं दिखाई दे रहें हैं और एक पेड़ भीं दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर काफी सारे ऊपर तस्वीरें भी दिखाई दे--